यह एक मस्जिद है जिसके कलर सफेद है एवम यहाँ पर एक लाइट पोस्ट भी लगा हुआ है।

यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमे कई व्यक्ति बैठे नज़र आ रहे हैं | लाईटे लगी हुई है बलून्स लगे हुए हैं और कई तरह कई प्रकार के सामान है कुर्सियां --